नमस्कार transient response of circuits पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ: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
पहले circuit के transient response को परिभाषित करते हैं
transient response हैसंधारित्र या प्रेरित्र में संचित की हुई ऊर्जा के लिए circuit कैसे प्रतिक्रिया करता है
अब हम rc circuit का transient response दिखायेंगे
इस परिक्षण में हम निम्न करेंगे:
इस परिक्षण को करने के लिए od1 1k प्रतिरोधक के द्वारा a1 से जोड़ा गया है
1uf one micro farad संधारित्र a1 और ground gnd के बीच जोड़ा गया है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर experiments button पर click करें rc circuit चुनें
transient response of rc circuit और schematic विडोज़ खुलती हैं
transient response of rc circuit window पर 0 to 5v step button पर click करें
फिर 5 to 0v step button पर click करें step down voltage वक्र दिखता है
calculate rc button पर click करें rc = 114 msec दिखता है
window को खाली करने के लिए clear button पर click करें
cc charge button पर click करें 45 volts पर एक क्षैतिज वक्र दिखता है
आगे हम दिखायेंगे:
circuit में हम od1 के बजाय ccs से 1k प्रतिरोधक जोड़ेंगे यह circuit diagram है
window को खाली करने के लिए clear button पर click करें
cc charge button पर click करें संधारित्र पर voltage घातांकी रूप से बढ़ती है
calculate rc button पर click करें rc = 581 msec की value दिखती है
अब हम rl circuit का transient response दिखायेंगे
इस परिक्षण में हम निम्न करेंगे:
इस परिक्षण में
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर experiments button पर click करें और rl circuit चुनें
transient response of rl circuit और schematic windows खुलती हैं
transient response of rl circuit window पर 0 to 5v step button पर click करें
5 to 0v step button पर click करें step down voltage वक्र दिखता है
values दिखाने के लिए calculate r/l button पर click करें
l/r value = 0083msec milli second
प्रेरित्र की value = 1276mh milli henry
एक नियत कार्य में श्रेणी में जुड़े हुए दो coils उपयोग करके rl circuit के voltage वक्र plot करें
अब हम lcr circuit का under damped discharge दिखायेंगे
इस परिक्षण में od1 coil के द्वारा a1 से जोड़ा गया है
a1 01uf micro farad धारिता के संधारित्र द्वारा gnd से जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर experiments button पर click करें rlc discharge चुनें
eyes junior: rlc discharge और schematic windows खुलती हैं schematic window rlc circuit transient दिखाती है
eyes junior: rlc discharge window पर 5 to 0v step button पर click करें step down voltage वक्र दिखता है
ms/div slider को खिसकाएँ और 5 to 0v step button पर click करें under damped discharge curve दिखता है
values दिखाने के लिए fit button पर click करें
एक नियत कार्य में
अब हम rc समाकलन यानि integration दिखायेंगे
इस परिक्षण में हम square wave को triangular wave में बदलेंगे
यहाँ sqr2 1k प्रतिरोधक के द्वारा a1 से जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर sqr2 को 1000 hz पर set करें sqr2 check box पर click करें
आवृत्ति slider को खिसकाएँ
wave को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ एक square wave बनती है
उसी connection में 1uf one micro farad संधारित्र के द्वारा a1 को gnd से जोड़ें यह circuit diagram है
एक triangular wave बनती है जब rc समाकलन होता है तो एक square wave triangular wave में बदल जाती है
triangular wave का grace plot दिखाने के लिए xmg button पर click करें
अब हम rc अवकलन यानि differentiation दिखायेंगे
इस परिक्षण में हम square wave को narrow spikes wave संकीर्ण नुकीली wave में बदलेंगे
इस परिक्षण में sqr2 1uf one micro farad संधारित्र के द्वारा a1 से जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
एक square wave बनती है
उसी connection में a1 को 1k प्रतिरोधक के द्वारा gnd से जोड़ें यह circuit diagram है
plot window पर sqr2 को 100 hz पर set करें
waves को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ narrow spikes waves दिखती है
square wave narrow spikes wave में बदल जाती है जब rc का अवकलन होता है
grace plot दिखाने के लिए xmg button पर click करें
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न अध्ययन किया: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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है